बुद्धा का कलर येलो है।

यहां एक झोपड़ी घर भी दिखाया गया है साइड में बंबू खड़ा भी है।

बिल्डिंग के आगे एक स्टेच्यू भी लगा हुआ है शायद जीसस क्राइस्ट का और क्रॉस का सिंबल भी बना हुआ है।

टेबल के चारों ओर कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है।

बच्चा झूले के ऊपर झूल रहा है और पोल का कलर येलो ब्लैक है।

इस तस्वीर में बच्चों को दिखाया गया है जो योगा कर रहे हैं योगा मैट के ऊपर --

तरफ ग्रीन ग्रीन मैदान दिखाया गया है।

ये एक दुकान की तस्वीर है जहां बहुत सारे कपड़े दुकान के आगे सजा सजावट तरीके से रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड तरफ में मिठाई रखा हुआ दिखाई दे रहा है जैसे लड्डू।

शिवलिंग के ऊपर ऑरेंज कलर कपड़ा बंधा हुआ है।

आगे तरफ एक इंसान खड़ा है जो बच्चों को भाषण देते हुए दिखाया गया है।

और इधर से एक र साइड से एक रस्ता भी ज जा रहा है।

राइट तरफ में एक गाड़ी को भी दिखाया गया है।

इस तस्वीर में बहोत ही बड़ा खुला मैदान को दिखाया गया है।

दूर तरफ एक घर भी देख सकते हैं जिसका दीवार का कलर व्हाइट है।

दाएं और बाएं तरफ में भी गाछीआ भी दिखाया गया है।

दाईं तरफ के दीवार में वेलकम मनीष लिखा हुआ दिखाया गया है।

और ग्राहकों के लिए बैठने के लिए कुर्सियां भी रखा हुआ दिखाया गया है।